कुछ बच्चों को देख रही हैं।

हमें कुछ सफेद फूल भी दिखाई दे रहे हैं।

साथ ही यहां हमें कुछ बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने लोहे के ब्रेंच रखे हुए हैं उनका रंग नारंगी और हरा है।

एक बड़ी ही सुंदर प्रतिमा देख रहे हैं मां ने हाथ में तिरंगा झंडा लिया हुआ है।

स्टेज का रंग सफेद और भूरा है।

जिस पर हमें कुछ बॉक्सेस और पैकेट नजर आ रहे हैं।

जिसमें बहोत से बिल्डिंगे के बनी हुई है।

सामने कुछ लोग काम करते नजर आ रहे हैं दीवार पर कुछ तस्वीरें लगी हुई दिख रही है।

दो सफेद रंग की बोरियां जमीन पर पड़ी नजर आ रही हैं।

जहां हम सामने एक बडे से मकान को देख रहे हैं।

यहां हम सामने एक ट्रेन को देख रहे हैं।